ब- बिल्डिंग्स हैं सोलर पेनल हैं।

लाइट है सरिया है बिजली के खंभे हैं तार हैं पेड़-पौधे हैं घास हैं मैदान है।

वाटर पार्क है स्लाइडारस है पोल है सीड़ी है सूइमिंग पूल है पानी है घास है पेड़ पौधे हैं।